इनमें हर खंड में यहाँ पर चार पांच खंड को अलग अलग कांड दिखाई दे रहा हैं यहाँ पे अलग अलग सामान रखा हुआ हैं यहाँ पर कुछ स्केच पेन रखा हुआ है यहाँ पर पेन रखा हुआ दिखाई दे रहा हैं यहाँ पर रबड़ उई रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन में कुछ लोग खेलते ना जा रहे हैं कुछ अलग-अलग ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं सिंगल ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही जो कि इधर से भी कंस्ट्रक्शन का कर--